यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है और इसमें अनेक तरह के फूलों फूलों से सजाया हुआ यह एक यह फूल आर्ट आर्टफिशयल आर्ट आर्टिफिशियल फूल है इस यह फु इसमें अनेक प्रकार के फूल है जैसे --

और इस बिल्डिंग का कलर बहुत ही अच्छा और यह बिल्डिंग देखने में बहुत ही --

यहाँ यहाँ एक पहाड़ दिखाई दे रहा और इस पहाड़ के इसी तरफ एक व्यक्ति खड़ा हैं और वह इस पहाड़ को देख रहा हैं इस पहाड़ के ऊपर बहुत से हरे-हरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं जो बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा हैं और यह पहाड़ बहुत ही सुंदर --

यहाँ तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति पिल एक व्यक्ति गड्डे में पिलर को पकड़े हुए हैं और दूसरा व्यक्ति ऊपर से पिलर को पकड़े हुए हैं और तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दे देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सैलून है और यहाँ चार लोग दिखाई दे रहे हैं दो लोग दो लोग फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों बच्चे बैठे हुए और यहाँ एक महिला का हाथ भी दिखाई दे रहा है और यह बच्चा अपना बाल कटवाने के लिए सैलून --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

यहाँ एक मछली दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और हरियाली भी हैं और मिट्टी का कलर --